एक खिड़की दिखाई दे रही है जहां ऊपर के तरफ मुझे एक--

बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जहां सामने के तरफ बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहीं हैं।

जहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

सामने मुझे यहां पर एक छोटा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।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

जहां आगे की तरफ मुझे सीसे का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

और आगे की तरफ बहुत सारे।